यह एक अतिथि गृह है। यहाँ पे शहरो से बोहोत बड़े अधिकारी लोग आते है। इस अतिथि गृह में बोहोत सारा सुविधा होता है। साफ़-सफाई भी होता है। यहाँ के गार्ड भी होते है सुरक्षा के लिए।

यह एक नेवला है यह नेवला गाँवो में भी पाया जाता है जंगल में भी होता है नेवला सापों से लड़ता भी है और यह नेवला--

यह एक पहाड़ है यह बहुत सुंदर जगह है यहाँ पे लोग गर्मी के दिन में छुट्टी बिताने के लिए जाते है और सूंदर-सूंदर यहाँ पे पेड़ और बगीचा होता है और यहाँ बहुत सारे बच्चे पिकनिक के लिए भी जाते है और घूमते भी है और देखते भी है।

ये एक बस है जो डीजल से चलता है इस बस को चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है जो बहुत सारे दैनिक यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाता है और उसके बाद सफर कराता है।